ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाये गए ये मंदिर दूर - दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए और पूजा करके जाते हैं बहुत ही सानदार तरीका का दिखता है ये मंदिर बहुत ही नामी मंदिर है ये।

बहुत ही बहुत ही बड़ा यहाँ एरिया में फैला हुआ है रेलवे स्टेशन बहुत ही नामी है ये रेलवे स्टेशन । यहाँ यात्री आते है एक जगह से दूसरी जगह जाते है।

दूर दूर से लोग कुत्ता लेके आते हैयहाँ इलाज करवाते है|